एक व्यक्ति ने ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना हुआ है।

यह एक होटल या किसी रेस्टोरेंट का डाइनिंग हॉल है।

मेज पर चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है।

शायद वो कुछ बुक्स दे रहा है यहां से।